ये एक दुकान का दृश्य है। जिसमे कई सारी रेक दिखाई दे रही हैं। रेक में सामान दिखाई दे रहा है। एक मेडिकल स्टोर है जिसमे --

ये एक मॉल का दृश्य है जिसमे नीचे फर्श दिखाई दे रहा है जोकि पत्थर से बना हुआ है उसमे चौकोर आकृति बनी हुईं है।

यहाँ पे एक टॉय टेन जाती हुई दिखाई दे रही है जोकि नीले रंग की हैं।

इसकी प्लाई दिखाई दे रही है। इसका सिरहाना दिखाई दे रहा है। सिरहाने पे भूरे रंग से --

बिजली के तार जा रहे हैं। पेड़ो की टहनियाँ दिखाई दे रही हैं। हरे-हरे पत्ते चारो तरफ फैले हुए हैं।

एक कपड़ा दिखाई दे रहा है जोकि सजा हुआ दिखाई दे रहा है ।

पर अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी हुई है। बोर्ड लगा हुआ है जोकि --

कुछ लोग उसमे उतरते हुए दिखाई दे रहे है उसके बराबर में मोटरसायकिल भी --

पिलर पर जो एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि काले रंग का है और उसपे सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है। नीचे --

कुर्सियाँ पड़ी हैं। कुर्सी सफ़ेद रंग की है जिसपर लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। सामने की तरफ एक महिला है जिसने --

ये एक रोड दिखाई दे रही है जिसमें नीचे सीमेंट की फर्श दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे बसें खड़ी हुई हैं। बस --